और नीचे इसके फा फादर खड़े हैं फादर ने किसी गेस्ट को बुलाया है।

ये एक बहुत बड़ा सा गार्डन लग रहा है गार्डन के अंदर बहुत सारे ट्री लगे हुए हैं और ट्री बहुत प्यारे लग रहे हैं।

और बॉडी फ़ीट रहती है और हमें कोई अं बिमारी नहीं होती है।

ये बहोत बड़ा पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप लग रहा है और इस पेट्रोल पंप पर लो लोग अपनी गाड़ी लाते है अपनी बाइक लाते है अपनी स्कूटर लाते है।

कार लाते है और अपना-अपना अपनी कार उसमें पेट्रोल फील करवाते है बड़ी-बड़ी --

यह बहुत बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड लग रहा है ग्राउंड के अंदर बहुत सारा रेता पड़ा है आई थिंक ये रेगिस्तान लग रहा है।

आई थिंक ये ट्यूबवेल बन रहा है या समथिंग कुछ और इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग हो रही है।

ये हमारी एक्सरसाइज योगा करना हमारे डेली रूटीन के लिए बहोत अच्छा है इसमें मेडिटेशन भी मेडिटेशन भी होती है मेडिटेशन से हमारे हमारी बॉडी में शांति मिलती है और एक अच्छी पूरी डेली ट्यून हमारा अच्छा जाता है।

ये बहोत बड़ी सी मज्जीद लग रही है मज्जीद का वॉल बहोत अच्छी लग रही मज्जीद वॉल का कलर बहुत अच्छा लग रहा है व्हाईट कलर मज्जीद के वॉल का कलर व्हाईट कलर लग रहा है।

रिलीजन रिलीजन एरिया हैं जहाॅं पर लोग अम जो हमारा मंदिर होता है ऐसी मस्जिद मुस्लिम मुस्लिम के लिए--

और आफिस का एंट्री गेट शीशे का बना हुआ है जो बहोत प्यारा बहोत स्टाइलिश लग रहा--

एक टॉर्टोइस पड़ा हुआ टॉर्टोइस का लूक बहुत अच्छा आ रहा है यह बहुत बड़ा टॉर्टोइस है।

एक फ्लावर रोड जा रही है जिसे लोग यहां पर आते हैं गार्डन का व्यू देखते है गान--